नमस्कार दोस्तों
जियोजेब्रा में सममितीय रूपांतर पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सममितीय रूपांतर सीखेंगे जैसे कि रेखा सममिति परिक्रमण सममिति तथा माप और स्थिति के साथ आकृति का विस्तार करना भी सीखेंगे
हम मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा का बुनियादी ज्ञान है
यदि नहीं कृपया प्रासंगिक ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटु वर्जन 1110 जियोजेब्रा वर्जन 3247 का उपयोग कर रहा हूँ
हम निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट अबाउट लाइन रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड पॉइंट बाय एंगल दिलते ऑब्जेक्ट फ्रॉम आ पॉइंट बाय फैक्टर सेमिसर्कल थ्राउघ त्वो पॉइंट्स रेग्यूलर पॉलीगॉन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रूपांतर की परिभाषा
ज्यामितीय आकृति का सममितीय रूपांतर है निर्देशांक स्तर पर इसकी स्थिति आकार या आकृति में बदलाव
मूल आकृति को Objectऑब्जेक्ट कहते हैं
रूपांतरित आकृति इमेज इमेज को कहते हैं
प्रतिबिंब सममिति को रेखा सममिति भी कहते हैं
सममिति को वह प्रकार जहाँ एक आधा दूसरे आधा का प्रतिबिंब होता है
आप छवि को फोल्ड कर सकते हैं और दोनों अर्धांशों का ठीक से मिलान कर सकते हैं
सममिति रेखा वह रेखा है जिस पर आकृति प्रतिबिंबित होती है
जियोजेब्रा विंडो पर जाते हैं
दश होम जीटीजीटीमीडिया एप्सग्टगटंडर टाइप जीटीजीटीचूज एडुकेशंगटीजीटी और जियोजेब्रा देखें
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एल्जेब्रिक व्यू को बंद कर रहा हूँ
एल्जेब्रिक व्यू पर क्लोज बटन पर क्लिक करें
लाइन ओएफ सिमेट्री के साथ शुरूआत करते हैं
पहले एक समबाहु त्रिकोण बनाएँ
टूलबार से रेग्यूलर पॉलीगॉन टूल चुनें
ड्रॉइंग पैड पर बिंदु आ B पर क्लिक करें और भागों की संख्या के लिए 3 प्रविष्ट करें
एक समबाहु त्रिकोण एबीसी बन गया है
अब कोण के एक भाग पर एक लम्ब द्विभाजक खींचें
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल चुनें और भाग एसी पर क्लिक करें
पॉइंट टूल चुनें और त्रिकोण के अंदर बिंदु बनाएँ
किसी एक शीर्ष की ओर बिंदु डी को स्थानांतरित करें
बिंदु डी पर राइट क्लिक करें और ट्रेस ओन चुनें
टूलबार से रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट अबाउट Lineटूल चुनें
बिंदु डी पर क्लिक करें
यह बिंदु डी को चिन्हांकित करेगा
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लम्ब द्विभाजक पर क्लिक करें
यह लम्ब द्विभाजक के दूसरी ओर पर प्रतिबिंबित छवि डी को प्रदर्शित करेगा
डी बिंदु डी की दर्पण छवि है
बिंदु डी के लिए ट्रेस ओन सेट करें
मूव टूल का उपयोग करके त्रिकोण के साथ बिंदु डी को स्थानांतरित करें
टूलबार में मूव टूल के नीचे पहले ऑप्शन पर क्लिक करें
माउस से आकृति पर क्लिक करें
त्रिकोण को ट्रेस करके इसे ड्रैग करें
अब माउस बटन को छोड़ दें
आपने क्या नोटिस किया
यहाँ लम्ब द्विभाजक रेखा सममिति है
डी आब्जेक्ट है और डी इमेज है
रेखा के पास एक अर्धवृत्त प्रतिबिंबित होता है
एक अर्धवृत्त खींचें
सेमिसर्कल थ्राउघ त्वो पॉइंट्स टूल पर क्लिक करें बिंदु ई और फिर फ़ को चिन्हित करें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स पर क्लिक करें
बिंदु जी और ह को चिन्हित करें एक रेखा खींची गई है
रेखा की प्रोप्रटी को बदलें
रेखा पर राइट क्लिक करें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें स्टाइल पर क्लिक करें स्टाइल बदलें
टूलबार से रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट अबाउट लाइन टूल चुनें
अर्धवृत्त ईएफ पर क्लिक करें
रेखा घ पर क्लिक करें
यह रेखा घ की दूसरी ओर पर प्रतिबिंबित इमेज ईएफ प्रदर्शित करेगा
आकृति अब कैसी दिखती है
यह वृत्त की तरह दिखती है
अब इस फाइल को सेव करें
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम line सिमेट्री टाइप करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा
आगे रोटेट थे ऑब्जेक्ट अराउंड आ पॉइंट बाय एंगल के बारे में सीखते हैं
परिक्रमण की परिभाषा
परिक्रमण एक रूपांतर है जो आकृति को एक कोण से निश्चित केंद्र के आस पास धुमाता है
यदि आकृति अपरिवर्तित दिखाई देती है तो आकृति परिक्रमण सममिति है
आप आकृति को किसी भी डिग्री माप में घुमा सकते हैं
परिक्रमण दक्षिणावर्त और वामावर्त हो सकता है
नई जियोजेब्रा विंडो ओपन करें
फाइल जीटीजीटी न्यू पर क्लिक करें
एक समकोण चतुर्भुज बनायें
टूलबार में रेग्यूलर पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
ड्रॉइंग पैड पर क्लिक करें
बिंदु आ और ब को चिन्हित करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
ओक पर क्लिक करें
समकोण चतुर्भुज एबीसीडी बन गया है
रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड आ पॉइंट बाय एंगल टूल पर क्लिक करें
समकोण चतुर्भुज एबीसीडी पर क्लिक करें
यह समकोण चतुर्भुज को चिन्हांकित करेगा
अब किसी एक शीर्ष पर क्लिक करें
मैं आ पर क्लिक करूँगा
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
कोण क्षेत्र में 60 टाइप करें
पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट से ° चुनें
clockwiseऑप्शन चुनें ओक पर क्लिक करें
यह 60° के कोण के साथ चयन बिंदु पर समकोण चतुर्भुज को दक्षिणावर्त घुमायेगा
परिक्रमणित इमेज ABC डी बन गई है
मूव टूल का उपयोग करके इस आकृति को अलग करें
आगे दिलते ओर एनलार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट बाय फैक्टर विस्तारण विस्तारण एक रूपांतर है
जिसमें मान गुणक का उपयोग करके आकृति का विस्तार किया जाता है
पॉलीगॉन टूल का उपयोग करके त्रिकोण बनाएँ
ई फ़ जी और त्रिकोण को पूर्ण करने के लिए फिर से ई पर क्लिक करें
न्यू पॉइंट टूल पर क्लिक करें और बिंदु ह को चिन्हित करें
दिलते ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट बाय फैक्टर टूल पर क्लिक करें
त्रिकोण ईएफजी पर क्लिक करें
यह त्रिकोण को चिन्हांकित करेगा
बिंदु ह पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
नम्बर फील्ड में वेल्यू 2 टाइप करें
ओक पर क्लिक करें
यह आकृति का दुगना विस्तार करेगा

सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स पर क्लिक करें बिंदु heई को जोड़ें

बिंदुHGG को जोड़ें

बिंदुHFF को जोड़ें
यहाँ आप देख सकते हैं कि ह विस्तारण बिंदु है
आप गुणक का मान टाइप करके जितना चाहें उतना आकृति का विस्तार कर सकते हैं
अब इस फाइल को सेव करें
फाइलगटीजीटी सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम dilate ट्रायंगल टाइप करूँगा
सेव पर क्लिक करें इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
रेखा के प्रतिबिंब के बारे में
बिंदु पर एक आकृति का परिक्रमण
मान गुणक द्वारा आकृति का विस्तार करना
नियत कार्य के रूप में मैं चाहूँगा कि आप एक पंचभुज बनाएँ
बनाने के लिए रेग्यूलर पॉलीगॉन टूल का उपयोग करें
पंचभुज के किसी एक भाग पर लम्ब द्विभाजक बनाएँ
पंचभुज के अंदर एक बिंदु बनाएँ
बिंदु के लिए ट्रेस ओन सेट करें
लम्ब द्विभाजक के निकट बिंदु का प्रतिबिंब पता करें
इमेज बिंदु के लिए ट्रेस ओन सेट करें
पंचभुज का अनुरेखण करें यह देखने के लिए कि आपने सही रेखा सममिति का चुनाव किया है
बिंदु पर 135° में मूल पंचभुज को वामावर्त घुमाएँ
3 गुणक द्वारा बिंदु पर पंचभुज का विस्तार करें
नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ